ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ बोहोत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहैं हैं ।

कुछ घास दिखाऐ जा रहे है। एक घर दिख रहा है। कुछ केले के पेड़ दिखाऐ जा रहे है। उपर खुला आसमान दिखाया जा रहा है।

पीछे बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है। नदी के इस पार और इस पार दोनों तरफ ही बड़े-बड़े पेड दिखाई दे रहे है।

फीड में सामने एक कॉलेज दिख रहा है कॉलेज के खिड़कियां दिखाई दे रही है ऊपर कुछ बत्तियां दिखाई दे रही हैं कुछ खंभे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक छोटा स मेदान दिख रहा हे । जिसमे छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हे । कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हे । ऊपर खुला आसमान दिख रहा है।

इस चित्र में सामने एक विद्यालय दिख रहा है| नीचे दो आदमी दिख रहे हैं और एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

इस तस्वीर मे सामने एक कपड़े का दुकान दिख रहा है। दुकान मे बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे है। दुकान के सामने कुछ आदमी और कुछ औरत दिखाई दे रहे है।

यह एक कमरा है। पीछे एक सलून का विज्ञापन दिख रहा है। जिसका नाम ब्लूशिंगटन है।

कुछ लोग पेदल चल के आ रहे है। कुछ लोग अपने अंदर बाते कर रहे है। एक साइकिल दिख रहा है। पीछे की तरफ बहुत सारे पैड दिख रहे ह। उपर आसमान दिख रहा है।

ऊपर दीवार पे एक पंचांग दिख रहा है। कुछ कुर्सिया दिख रही है। सामने कुछ कलम दिख रहे है। एक पंखा दिखाई दे रहा है। फूलों को बहुत अच्छी तरह के से सजा के रखा है।